यहाँ पर एक दीवार नजर आ --

जो की खुली है। बैंक के साइड मे एक मकान है और मकान दो मंज़िला है। नीचे किराने की दुकान है।

यह स्टेच्यु है और यहाँ पे बहुत सारी चीजे रखी हुई है।

गेट के आस पास बहुत सारे पेड़ लगे हुए --

खिड़की के बाहर एक एरोप्लेन नजर आ रहा है। एरोप्लेन का कलर नीले कलर का है।

ये तलाआआब के पास एक मकान नजर आ रहा है।